सारी गाय हैं यहां पे इसको नाद बोलते हैं जिसमें गाय को खाना खिलाया जाता है।

ऑयल ग्रीसिंग सब रखे डब्बे रखे हुए उसके।

और लेफ्ट साइड में ग्लव्स और जो है एक्सीलेटर के ऊपर चढ़ने वाले ग्लव्स हैं।

पिलास पेचकस टूल्स सारे रखे एक चेयर दिख रही है।

पेड़ दिख रहा है और साइड में एक गाड़ी दिख रही ट्रक ।

दो आदमी दिख रहे पिलर के बीच में।

बीच में सबसे आगे एक खंभा लगा हुआ है जिसके बगल में एक सर्किट बोर्ड दिख रहा है बड़ा सा लाइट ऑन करने के लिए।

ये हाथ में फोन है फोटो खींच रहा है।

यहां पर खूब सारी औरतें दिख रही हैं सब साड़ी पहने हुए।

सामने लिखा हुआ है बोर्ड लगा हुआ है अग्रवाल साइकिल स्टोर ।

दूसरे में एरो यू_यस_ए एटिन फिफ्टी वन और बीच में एरो बना हुआ है।

गेट है शीशे का दोनों साइड और साइड में एक और शोरूम में जो दिख नहीं रहा है पूरा।

जिसमें एक औरत खड़ी है हाथ जोड़के जिसका फेस नहीं दिखरा है और सब लिखा हुआ है उसपे --

छे-सात बोरी और इसके बगल में रखी हुई हैं पाँच-छे बोरी।

यहां पे चार आदमी दिख रहे हैं।

एस_एम कॉलेज हाजीपुर लिखा हुआ है।

लाइंस से सब टेबल्स पड़ी है।

साइड में आइसक्रीम का बोनर लगा हुआ है बड़ा सा।

बीच में सीमेंट के चलने के लिए पार करने के लिए नीचे पत्थर पड़े हुए हैं जिसपे एक आदमी चढ़ा हुआ है।

रोज दिख रहे हैं एक डलिया में पीले कलर के फूल रखे हुए हैं खूब सारे।

ये एक बैंक दिख रहा हैं यूनियन बैंक ।

हर टाइप की मछली अलग अलग रखी है बड़ी छोटी--

नीचे एक कैफे जैसे दिख रहे हैं पूरा।

गमले लगे हुए हैं और लाइन से शॉप्स हैं।

सामने एक चेयर दिख रही है बैठने के लिए और शीशा लगा हुआ है।

यहां पे एक रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

राइट साइड में एक मस्जिद या कुछ दिख रही है मीनार दिख रहा उस--

एन डबल टी डाटा लिखा हुआ है सामने।

एक आदमी ब्लू कलर की शर्ट पेहनकर कुछ लेकर जा रहा है।

एक पेड़ पे पत्तियां दिख रही हैं दूसरी--

डैश पेचकस रेंच वगैरा लगे हुए हैं।